इस तस्वीर में बहुत सारी गमले दिख रहे है फूल के कोई गुलाबी फूल देख रहा है कोई पीला फूल देख रहा है कोई लाल फूल देख रहा है हर तरह के फूल दिख रहे है।

और वाइट कलर का मोटर कार दिख रहा है और वाइट कलर की गेरेज दिख रही है आसमान ब्लू और वाइट दिख रहा है।

इस तस्वीर मे बहुत सारे मोटरबाइक दिख रहे है कोई काला कलर का दिख रहा है कोई काला लाल कलर का दिख रहा है ।

अ घर दूकान के ऊपर एक घर है जिसपे बहुत सारे झालर बत्तियां लटकी हुई दिखाई दे रही है कलरफुल ।

और ह उम्म कुछ औरत हैं तो कुछ लेडीज दिख रही हैं और कुछ आदमी बैठे हुए हैं कुर्सी पे।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

और एक बड़ी सी फील्ड दिखाई दे रही हैं। दूर बोहोत सारी छोटी-छोटी घरें दिखाई दे रही हैं।

एक सीढ़ी बना हुआ चबूतरा बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक सीढ़ी बना हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान उजला कलर का दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में छत की ढलाई हो रही है। कुछ वर्कर काम कर रहे हैं।

दूकान के ऊपर और रोड एक है जो की है रोड के किनारे पे --